बहोत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं जो बाहर चल रहे किसी खेल को देख रहे हैं। मैदान के आसपास कुछ पेड़ लगे हुए --

फूल और बहोत सारे प्रकार के वृक्ष लगे हुए हैं। कुछ बच्चे आसपास खेल रहे हैं।

क फल की दुकान है जिसमें सेब नासपाती पपीता और बहोत सारे --

एक टमाटर के ढेर के इर्दगिर्द बहोत सारे लोग खड़े हुवे हैं। कुछ गाड़ियाँ भी रखी हुवी हैं।

लोग विभिन्न प्रकार की सब्जियाँ खरीद रहे हैं।

अन्य सामान भी टंगा हुआ है।

एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसमें बहोत सारे फ्लोर बने हुए हैं। बिल्डिग के बाहर छोटे छोटे --

कुछ विभिन्न प्रकार के फूल लगे हुए है जो उसे बहोत सुंदर दिखा रहे हैं।

पहाड़ है। उसमें बहोत छोटे छोटे से पेड़ लगे हुए हैं। आसपास थोड़ा थोड़ा पानी भरा हुआ है। नीला आसमान है।

लाल पत्थर हल्के-हल्के से दिखाई दे रहे हैं।

विभिन्न प्रकार के सामान पकड़ा हुआ है। कुछ महिलाओं की सिर पर पल्लू है। कुछ बच्चे हैं।

उसके पीछे तरप एक बडा सा टॉवर है जिसमें बहोत सुंदर सी लाइ --

पदुकाओं के पास कुछ फूल रखे गए हैं।

ये वॉटर फॉल की स अअअ पानी में फिसलने वाली सरकपट्टी --

का फ्रंट गेट दिखाया गया है जिसके बाजु में एक तीन मंजिला बिल्डिंग --

बनी हुई है। बिल्डिंग पर ऊपर जाने के लिए लोहे की सीढीयों का इस्तेमाल किया गया है।

नीचे हरे कलर का मैट बिछाया गया है। गोल्डन रंग से हल्की-हल्की डिज़ाइन बनाई गई है।

गोल्डन कलर का प्रयोग किया गया है घर के बाहर दो सीढियाँ हैं।